एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है जिसमें हरीहर क्षेत्र सोनपुर मेला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है प्रणाम भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

वो वहां बहुत सारी टंकिया दिखाई दे रही है ऊपर आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

के आंटी अंकल खड़े हुए दिखाई दे रहे है और जिस ब्रिज के नीचे से एक बहुत बड़ी नदी बहती हुई दिखाई दे रही है नदी का पानी धुँवा जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है और न --

फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं स्टेज पर काफी सारे कैमरे और लाइटें लगी हुई दिखाई दे रही है कुछ कुर्सियाँ टेबल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिन पर पिंक और सफ़ेद कलर के पर्दे बिछे हुए दिखाई दे रहे हैं।